और बैंक भी है। सामने की साइड बाइक खड़ी हुई है भी। बैंक खुला हुआ है यहाँ पे ।

फिल्म बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ।

बहोत ही सुनसान लग रहा है। यहाँ पर हरा भरा है। घुमने के लिए बहोत --

ये इमेज हमें दिन के टाइम की दिखाई दे रही है। बोहोत तेज धूप दिखाई दे रही है। सामने की तरफ एक --

वृक्ष भी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे आटो खड़े हुए हैं। चौराहे जैसा दिखाई --

इसमें बहोत ही बड़ा व्रक्छ लगा हुआ इमली के जैसा और सामने भी व्रक्छ लगा हुआ।

यह हमें रिसेप्शन दिखाई दे रहा है। होटल का रिसेप्शन दिखाई दे रहा है या ऑफिस का कोई बोहत ही सुन्दर रिसेप्शन दिखाई दे रहा है।

सामने एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ एक ए .टी .एम. मशीन दिखाई दे रही है।

एकदम प्ले गार्डन है बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहे है। यहाँ पे रीगल बनी हैं बच्चों को बैठने के लिए --

ये सीन नजर आ रहा है। घास आस सब सूख गई है। पानी एकदम हरा भरा नजर आ रहा है। ज्यादा पानी नहीं है। पानी भी कम नजर --

पहना ब्लू कलर का रेड कलर की टाई लगाई है। हाथ ऊपर किये हुए हैं। एक बुक हाथ में रख --

पर्सन बहोत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वाच पहने हुए हैं। मोबाइल बहोत अच्छा लग रहा है। दोनों हाथ को ऐसे जोड़े हुए --

ये एक रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दिखाई दे रही। स्कूल कॉलेज या कुछ ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे एक पर्सन पैदल चल के जा रहा है।

यहाँ बैठने के लिए चेयर्स लगी हु रेलवे स्टेशन एकदम साफ़ सूत्र --